यह एक पार्क का दृश्य बना हुआ है जहां पर दो छोटे रूम दिखाई दे रहे हैं जिनकी कलर रेड एवं व्हाइट है।

पे ऊपर भी लगाये गए है।

यहां पर तीन चार चेयर नजर आ रहे हैं जिनकी कलर येलो एवं ब्लैक है।

यहां पे सूखा पेड़ भी नजर आ रही है जिसके ऊपर एक चिड़ियां बैठी हुई है।

यह एक हॉस्टल का दृश्य बना हुआ है यहां पर लाइट से डेकोरेशन किए गए हैं।

पोस्टर बनी हुई जिसमें काफी के पिक्चर्स बने हुए हैं।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

ऊपर की ओर लोहे की मदद से सेंटरिंग ठोकी की गई है नीचे के और बालू दिखाई दे रही है जिसपे तीन चार व्यक्ति बैठे हुए हैं।

कार की कलर रेड है।

यह एक एयरपोर्ट का दृश्य बना हुआ है जहां पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी कलर पिंक एवं रेड है।

बाहर की ओर पक्की की गई है यहां पर लोहे की मदद से खंबे में पोस्टर लगाए गए हैं।

सामने की ओर एक ए_सी लगी हुई है ऊपर की ओर एक एल_सी_डी टी_वी र दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर टाइल्स लगी हुई है साइड में टेबल बनी हुई जो लकड़ी और गद्दे की मदद से बनी हुई है।

ऊपर की ओर पंखे लगाए गए हैं यह मस्जिद की कलर व्हाइट है।

बाहर के और एक बड़ा सा गेट बनी हुई है जो लोहे की मदद से बनी हुई है।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

यहां पर एक ऑटो एक कर नजर आ रही है जिनकी कलर ब्लैक एवं व्हाइट है।

यह एक रोड का दृश्य बना हुआ है जहां पे रोड भी पक्की की गई है बाहर को दो स्कूटी दिखाई दे रहे हैं जिनकी कलर व्हाइट है।

एक ओर लोहे की रेलिंग टाइप का खिड़की नजर आ रही--